तीन व्यक्ति खड़े हुए है एक जगह।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

झंडे के नीचे चक्र है लाल।

ए_सी लगी हुई है मकान पर।

दो नाव दिख रही है पानी के किनारे पर--

कुछ लड़कियां भी कुडर्सी पर बैठी हुई है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी की खिड़की खुली हुई है।

नीचे टैल लगी हुई है व्यक्ति के पैरों में जूते हैं रेड कलर की।

बहुत सारी कुर्सियां हैं ब्लैक कलर की।

ऊपर छत है ब्लैक कलर की।

दीवार में एक जंगला लगा हुआ है।

कबाड़ धरा हुआ है एक नीचे--

तिरंगा खड़ा हुआ है बहुत ऊंचा।

सीढ़ियां ब्लैक कलर की चढ़ रही हैं मकान की ओर।

बहुत सारी छतरियां रंग बिरंगी टंग रही हैं।

शटर के कोने में पीली माला टंगी हुई है सुखी हुई।

पहाड़ दिख रहे है बहुत सारे एक पेड़ झुक रहा है ग्रीन ।

व्यक्तियों के सिर पर पीले कलर की टोपी लगी हुई है।

एक टोपी सरिये के ऊपर टंगी हुई है।

चार व्यक्ति खड़े हुए हैं दुकान में बहुत सारी व्हाइट कलर की बाल्टियां रखी हुई हैं।

चढ़ी हुई हैं और बहुत सारी कुर्सियां हैं।

एक पेड़ खड़ा हुआ है अंधेरे में।

ए_सी में टाइल लगी हुई है नीचे।

हीटर लगा हुआ है दुकान के बाहर।

एक बाल्टी धरी हुई है पीले कलर की।

नीचे पक्का हुआ है वाइट कलर की दीवार है।

एक सड़क पर एक मोटरसाईकल व एक औरत आदमी जा रहे है।

पूल दिख रहा है सड़क से सड़क के ऊपर।

एक थमला लगा हुआ है बीच में वाइट कलर का।

एक टंकी पीले कलर की मकान के ऊपर दिख रही है।

बहुत सारे गमले रखे हुए हैं रंग बिरंगे।

छोटी छोटी झाड़ियां दिख रही हैं सूखी हुई।